और हॉस्पिटल के तरफ से गोवर्नमेंट के तरफ से कुछ काम किया जा रहा है।

ये जामताड़ा सुभास चौक है सुभास चौक थोड़ा सा आगे है थोड़ा सा पीछे है घड़ी के पास जो बड़ा सा घड़ी यहाँ पे लगाएं गया है और एक राजा का मूर्ति है जिसपे वो बैठे है घोड़े पर घोड़े के एक पाव ऊपर पे है और राजा अपने तलवार को ऊपर की ओर कीए हुए हैं।

किराना की दुकान का फ़ोटो है जिसमे सूप टंगे हुए है और भी बिस्किट्स है साबुन है चिप्स पकेट्स पानी की बोतल स्टिंग फेविकविक और भी वगैरा वगैरा बहुत कुछ।

ये कोई चर्च है और ईशा मसीह का फ़ोटो लगाया गया है बाहर मे।

यात्री कंपनी का टोटो हैकाफी बहेतरिन है।